और अ पास ही में हम और भी दो से तीन दुकानें देख सकते हैं।

और बाकी अ नौ कार्टून अ एक ही साइज के हैं जो की अ टेंपो में लोड करके अ ले जा रहे हैं।

हाँ जिसमें बेड के ऊपर एक बेडशीट बिछी हुई है दो तकिया और एक कंबल भी रखा गया है।

लोहे की रॉड से बना हुआ है और उसके आगे ही हम बालकनी देख सकते हैं जिससे बहुत अच्छा व्यू आ रहा है।

जिसमें उनको टीन अ सेट्स है धूप से बचाने के लिए--

उसके सामने ही एक पीले कलर की दीवार है जिसको बहोत ही अच्छी अ पेंटिंग्स बनाई गई है उसके साथ ही में हम एक--

द चेन्नई सिल्क के नाम से एक शॉप है नीचे की साइड ।